ग्रे कलर का शर्ट पहने एक आदमी ने सफेद पर्पल और काले रंग की टी शर्ट पहनी है।

साइड में एक टेबल फैन भी है बाहर बहुत सारी दुकानें हैं कुछ आदमी जा रहा है एक आदमी --

दोपहर का सम टाइम है ई_सी लगी हुई है एक आदमी बाहर खड़ा है।

मौसम बहुत साफ लग रहा है स्विमिंग पूल गंदा है बहुत यहां पे एक जगह है जहां पे लोग जा सकते हैं।